ये एक गैरेज है जिसमें कांच गाड़ी जा रही है कार रेड कलर की है और यहाँ पे कोई नहीं है गैरेज अभी बंद है।

यहाँ पर ऐ.सी. भी लगी हुई है और एक बोल की तरह लाइट चमक रही है और यहाँ पर टेबल रखी हुई ई है।

और कोई नही है कार सुनसान पड़ी हुए है।

यह एक शॉप है जोकि बहुत सुंदर दिख रही है जोकि यहाँ पर बहुत सारे कपड़े मिलते हैं।

नदी में कुछ ग्रीन ग्रीन सा भी दिख रहा है जो की बहुत प्यारा लग रहा--

बैट बॉल और बॉलो का कलर व्हाइट है।